साइकिल देखने को मिल रहा है। वही पे एक स्कूटी देखने को मिल रहा है।

साइड में हरा कलर का रंगोली है बत्तियां देखने को मिल रहा है।

एमे एक सफा रखा हुआ है सोफे के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ जो कि लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

मैकेनिक के शॉप के बाहर तक फोटो देखने को मिला है जहां पे मैकेनिक --

यह उसने ब्लू तलर का शर्ट पहन रखा है यह आईना हमें देखने को मिल रहा है फोर व्हीलर का।

एक लोहे का गेट बना हुआ है आस पास बहोत सारे पेड़ लगे--

उसके बदल में लाल तलर और ब्लैक तलर ता एक तार देखने को मिला है।

उस हर पाइप के पास एक एक लाइट देखने को हमें मिल रहा है।

हमें यह एक ट्रैक्टर का एजेंसी देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर कोई ट्रैक्टर नहीं है।

अंदर मे एक शटर देखने को मिल रहा है उसके बाहर--

हमें यहां पे एक बहुत सारे होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं।

उसके पीछे मे छोटा सा आंगनवाडी घर मे टाइप रूम बना हुआ है।

थाली के अंदर चावल रखा हुआ है दाल रखा हुआ है सब्जी रखा हुआ है।

यहां पे बहोत यहां पे हमें बहोत सारे किताब रख देख देखने को मिल रहा है।

उसके बाहर में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।